यहाँ एगो आदमी है नदी के बीच-बीच में बहोत सारे हरे-भरे घास है निकल गया है और भी बहोत सारा घास है।

यहाँ ट्रैन चलने की रास्ता है और एक ट्रैन चल भी रही है उस पार वहाँ बहुत सारी लइटे लगी है एक पेड़ है बहुत ही हरा-भरा है यहाँ बहुत सारी बैठने की सुविधा है।

झाड़ियाँ का पत्ता इधर आ गया है पूल की ओर बहुत सारे पत्ते है हरे भरे।